जहां पे कुछ इलेक्ट्रिक गाडि़यां दिख रही है ये गाडि़यां बच्‍चो के मनोरंजन में--

दर्शनार्थियों के लिए बैठने के लिए दो बड़ी बड़ी सी टेबिल लगाई गई है।

यहां पर रात का दृश्‍य दिख रहा है जोकि एक गार्डन सा प्रतीत हो रहा हैं।

मन करता है हम भी यहां पर एक बार घूमने जरूर जाएं।

यह बिल्डिंग कोई सरकारी कार्यालय या कोई छात्रावास या कोई यूनिवर्सिटी लग रही है।

किसके में हिम्‍मत है जो इतने ऊपर चढ़ गया।